पुरे साफ़-सफाई के साथ पूजा की जाती है।

जो की बाहर से लिया हुआ है।

यहाँ पे टाइल्स लगे हुए हैं बहुत तरह-तरह के लाइटें लगी हुई हैं।

ये किसी घर का छत का रिपेयरिंग ो रहा है--

ये भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा है जो की बौद्ध गया में है।